तराजू भी झोटे है बड़े है खिडकी कि

एक लाल कलर की दीवाल है बोर्ड लगाए है जो की सफ़ेद कलर का है। लाल अक्षरो मे कुछ लिखा है।

एच.डी.एफ.सि बँक है जो कि व्हाईट कलर कि बिल्डिंग है एक ऊपर खिड़की है नीचे नीले कलर की बिल्डिंग है ए.टी.एम है ए.टी.ए.म सफ़ेद और नीले कलर के बैनर लगे हुए है शटर है जो की ब्लॅक कलर का शटर है। मोटर सायकल खडी हुई --

उधर टोपी पहना कुच्छ लोग खड़े है मोटर साईकल खड़ी है स्कूटी है एक तरफ कुछ ब्लॅक है व्हाइट है बोर्ड है जो कि नीले कलर का बोर्ड है सफ़ेद अक्षरो में--

ग्रे और नीले कलर कि कलर पूता हुआ है यह है जो जोकि लकड़ी का आसमान में

टेबल है हा जो कि रेड कलर कि कपडे बिचा हुआ है कुछ व्हाईट कलर के कपडे बिचा हुए है हरी हरी घास है हरी हरी पेड पौदे भी है हरी लाईट भी जल और काउंटर है जो सफेद हरे--